डिज़ाइन लगाया गया है।

यह एक घर है ।

एक आदमी पत्थरो में बैठ कर तालाब के किनारे --

जो बहुत ही अच्छा लग रहा है।

पानी से भरी हुई नदी है जिसके चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं।